बाहर एक आदमी हाथ पर हेलमेट लेके खड़ा है और एक लड़का जो मुँह मे मास्क लगा कर दो हेलमेट ले कर बैठ है। एक लड़के को वैक्सीन दिया --

दूर पर कुछ लड़को को भी देख सकते है और हम देख सकते हैं साइड में कुछ वाश क्या हुआ है।

बस के ऊपर कुछ आदमी बैठे हैं और कुछ आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है।

और आगे कुछ सुंदर-सुंदर घास भी दिख रहे हैं और साइड में देख रहे है। एक सुंदर वैरीगेट हुआ है जो व्हाइट कलर का है।

कुछ आदमी खड़ा है और यहां पर तीन बाइक दिख रहा है और आदमी बाइक पर बैठा है |

जिसके आगे कुछ पेंड़ भी हम देख रहे हैं और यह जागा बहोत ही खाली पड़ा हुआ है।

और दूर देख रहे हैं एक पेड़ है और जगह बहुत ही सुनसान है|